हैंलो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये तलवार वगैरह रखी हुई हैं जिसमें की ये तलवार का जो रखने का वो छत्र रहता हैं जिसमें की ये तलवार रखी हुई हैं ये--

हेलो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है जिसमे ये मुर्तिया वगेरा रखी हुई ये पुराने ज़माने की है।

ये बॉउंड्री सी ये सट और यहाँ विंडो वगैरह लगी हुई है जो कि काफी अच्छी है।

ये छत्तीसगढ़ की मस्जिद है यह काफी अच्छी मस्जिद है और बड़ी है यहाँ से देखिये कितना अच्छा लग रहा है देखने में पिरमिड लगे हुए है यहाँ बादल भी कितना अच्छा है अच्छा लग रहा है देखने में --

पेड़ वगेरा लगे हुए है ये मजीद काफी बड़ी है। और-- ]

ये भगवान् गणेश की मूर्ति है जो किसी पत्थर के ऊपर रखी हुई है बड़ा सा पत्थर है।

यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा दिख रहा है आसपास उधर पेड़ लगे हुए है और ये काफी अच्छा है कॉलेज ये बस्तर जिले का कॉलेज है।

ये बस्तर जिला है जिसमे की ये मुर्तिया वगैरा रखी हुई है कटी फिटी--